दो अंकल मिलकर उसे ठीक कर रहे हैं और मैकेनिक की दीवारों पर बहोत सारी अजीब गरीब चित्र नजर आ रहें--

और साइड में कुछ लोहे के ग्रिल और बीच में चलने की जगह भी नजर आ रही होगी।

इस दृश्य में देख जाए तो हरियाली ही नजर आ रही है।

और एक बड़ी सी इमारत है ये या कोई स्कूल या कॉलेज का दृश्य--

बच्चे ने नीला स्क्राफ पहना हुआ है जिससे उसके ऊपर बाल ना गिरे।

इमारतें भी नजर आ रही है और नीचे सफेद रंग की पार्किंग में गाड़ियां भी नजर आ रही है।

इस दृश्य में आपको एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है और वहां से निकलती हुई एक काले रंग की--